आसमान में आसमानी भी कलर रहा है नीचे इसका सफ़ेद भी दिख रहा है।

यह एक नदिया है नदिया के पास मे बहुत सारे घर भी है और आसमान भी दिख रहा है।

यहाँ लाइट भी जल रही है यहाँ छोटे-छोटे घांस भी हैं।

बकरिया सफेद और रेड कलर में है यहां पे हरे-हरे घास भी हैं बकरिया सब कुछ खा रहे है।

यहां एक दुकान है दुकान पे आदमी खड़ा है जो ब्लू और पीला में कपड़ा पहना है।

यह एक हॉल है हॉल में कुछ मशीनें रखी हुई है यहाँ पे खिड़की भी है।